एक दुकान की तस्वीर है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे गए हैं।

ये तस्वीर एक आदमी की है उसने सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी--

दुकान का दरवाजा शीशे का बना है और यहां माला--

दिख रहा है रोड पर ऑटो रिक्शा और बाईकें जा रही हैं।

दिखाई दे रहा है और उसमें फूल को पकड़ा हुआ है।

और एक सफेद कार भी य --

यहां पर बहोत सारे मकान--